यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन शुरु होने वाला है। बीम के लिए गड्डे खोदे गए हैं। यहाँ पे एक लड़का --

वहाँ पे हेल्प डेस्क सेण्ट हेल्प डेस्क वाले से बात कर रहे हैं रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हैं वहाँ --

रिवर के ऊपर बना हुआ है। पीछे रिवर नीचे रिवर दिखाई दे रही है और ऊपर ट्रांस्मिसन लाइन दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दिए दे रहे हैं। नीचे जमीन दिखाई दे रही है पत --

ऐटीम का नाम सीयूबी ऐटीएम है।

यहाँ पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है जिसमे कोई श्लोक हां कुछ लड़किया नृत्य कर रही हैं। दर्शक देख रहे हैं। बड़ा सा ग्रांड है जहा पर बहोत भीड़ लगी हुई हैं।